एवं यहां पर कई सारी कुर्सियां एवं लड़कियों की मदद से बनी कई सारे टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी कमरे का चित्र दिखाई दे रहा है।

अब किसी जगह या अस्पताल का दृश्य दिखाई दे रहा है ।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

एवं हरा रंग का जाली की मदद से कई सारे छोटे छोटे घर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

एवम सामने एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है एवम उसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एवं उसके हाथों में दो कंगन भी दिखाई दे रहे हैं।

एवं सामने दो तीन आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।